बहुत बड़ी एक मूर्त है जिसकी सिर्फ मुह बनी हुई है गोल्डन कलर की वहा पे बहुत सारे उजाले लैटिंग कर रहे है ऊपर बहुत सारे कलर के डेकोरेशन जुल रह है।

एक बहुत बड़ा खजूर का गझ है ऊपर आसमान अ शाम हो चूका है सुरज की किरन धीमी है साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है।

और नीचे पे एक खजूर का गछ है दूसरी साइड बड़ा सा तीन पत्थर रखा हुआ है जिसके ऊपर भी गछ है।